यह एक पार्क है जोकि देखने में काफी सुन्दर दिख रही है |

जैसे की आप इस फोटो में देख सकते है आसमान ब्लैक हो गया है।

यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है |

अ यह एक फील्ड है अ अगल बगल --